इस चित्र मे हमे एक गार्डन दिखाई दे रहा है जिसमे घास की कटिंग करके पेड़ -पौधे की कटिंग करके हाथी और उसका बच्चा बनाया गया है।

इस दृश्य में हमें दो जिराफ दिखाई दे रहे हैं जो की चिड़िया घर में कैद है।

अ जिराफ़ और रैबिट देखने को मिल रहे है जिसके आस-पास बहुत घने पेड़ और घास है।

इस चित्र मे हमे एक चीता दिखाई दे रहा है जो की नकली है यानि सीमेंट से बना हुआ है।

जिसमे दो मोलाना बेठे हुए है और एक मोलाना खडा हुआ है जो की एक आदमी से कुछ बात कर रहा है सामने एक घड़ी लगी हुई है जिसमे टाइम दिख रहा है।

दो लड़किया एक अ स्कूटी चला रही है कुछ बाइक चला रहे है और सड़क से निकल रही है।

आस- पास पहाड़ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है।

इस द्रश्य में हम एक शादी का समाहरो दिख रहा है जिसमे पंडित जी और बहुत सारे मेहमान दिखाई दे रहे है।